इस चित्र में हमे हरा-भरा जंगल दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग दिख रही है ए जिस जिसमें थ्री स्टोरी बिल्डिंग है।

और हमे कई तरह के पाइप्स दिखाई दे रहे हैं जो अंदर जुड़े हुए हैं और हमे ए चादरों का सेट दिखाई दे रहा है।

बिचात रेडी है इस पर मेहरून कलर के ताकिए लगाएं गए हैं और व्हाइट कलर के सोफे हैं यहाँ का फर्श ब्राउन कलर का है और ऊपर बहुत अच्छी सजावट की--